सामने की तरफ एक लड़का दिखाई दे रहा है और बहुत लोग भी दिखाइए इस फोटो में हमें दे रहे हैं।